अमम पीला और इसके ऊपर साइड रखी हैं मस्त कपड़े रखे हुए हैं अच्छी लाइट लगी हुई हैं उसमे नीचे फर्श हैं। अच्छे--

इसमे मुजे एसा अनुभव अनुभव हो रहा है बहुत सारे लोग बैठे हुवे है और अमम मेरे को चटाई बिछाई हुई है रेड चलाई चटाई बिछी हुई है और एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुवा है ब्लैक व्हाइट टी शर्ट पहने हुवे है रेड टी शर्ट पहने हुवे है। सब बैठे हे सब लोग--

एक पलंग बिछा हुआ हे पलंग पर चादर बिछा हुआ है उसके ऊपर ट्रॉफी रखी हुई हैऔर एक इंसान की फोटो लगी हुई हैं।

ऊपर नीचे टाइल्स लगी--

अ - अ बहुत बड़ी गुंमट बनी हुई है ऊपर आसमान दिख रहा है व्हाइट कलर का म मस्जिद टाइप बहुत बड़ी गुंमट गुंमट दिख रही है मस्जिद मंदिर कोई अ - म गुंमट कलर हर हरा कलर है गुंमट मे व्हाइट कलर है।